आप इस इमेज में देख ही रहे होंगे कि ये एक पानी के ऊपर से जाने वाला पुल या डैम टाइप बना रखा है और --

आप इस इमेज में देख सकते हैं की एक स्नैक्स बार के नाम से दुकान है उसी के बाहर का व्यू है और यहाँ पर दो तीन लोग बैठे हुए है एक म मुल्ला भी बैठा हुआ है जिसने कैप ओढ़ रखी है।

काफी सारे प्रोडक्ट उन्ही के पास रखे हुए है और सामने की तरफ भी काफी अच्छी डेकोरेशन्स की हुई है। रूफ पर भी काफी अच्छा है। नीचे पर भी काफी साफ सफाई है देखने में काफी अच्छा लग रहा है।

जो कि कंटेनर लोडर होता है और सप्लाई के लिए काम आता है। उसी पे ये एक तरह की मशीन लोडिंग मशीन लगी हुई है। जिससे सभी चीज़े इससे शिप पर लोड की जाती है ।

अं ये आपको किसी रिवर का इमेज सामने की तरफ दिखाया जा रहा है। इसी रिवर के ऊपर से आप ये पुल देख सकते हैं जो इस रिवर को क्रॉस कर रहा है।

आप इसमें देख रहें हैं की सामने की तरफ एक वाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है| वाइट कलर की बिल्डिंग में कम्पलीट तरह से कुछ ट्रीज ने रोक रखा है।